यह एक पार्क की तस्वीर है जिस में पार्क में एक स्टेचू भी बना हुआ है यहाँ पे काफी सरे आदमी घूमते हुए नजर आ रहे है यह एक पेड़ पोधे लगे हुए है जहा पे--

इश तस्वीर में हम देख सकते है की ये एक पुल की तस्वीर है इस में बहुत सारे पानी लम्भा रही है और एक खण्डर भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हम देख सकते है की यह एक रेत की तस्वीर चारो तरफ रेत ही रेत फेला हुआ है और एक ब्रिज भी बना है हुआ है जिसमें--

यहाँ एक पूल भी दिखाई दे रहा है सामने काफी सारी हरियाली भी नजर आ रही है बहुत अच्छा सीन है।

यह तस्वीर में कुछ मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे है जिसमें के कुछ मजदूर अपने काम कर रहे है कुछ खड़े है वार्तालाप--

बांस से यह प्रकृति का सुन्दरता और भी बढ़ ज्यादा बढ़ गया है जो कि की काफी सुंदर दिखाई दे रही है।